बहुत अच्छा देखने में लगा बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छा है ।

बहुत पीला कलर का पेंट किया हुआ टावर भी हैं छोटा जैसा --

बहुत ही अच्छा बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है बहुत ही सुन्दर हैं ।

बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छा एक आदमी क कॉपी ले कर क्या लिख रहा है एक आदमी क्या पढ़ रहा है एक आदमी वहा बैठे हुए है।